और खिड़की दिख रही है एक दरवाजे दिख रहें है बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहें है।

सूटकेश रखे हुए दिख रहै हैं।

इसमें बहोत सारी तार लगी हुई दीख रही हे अ लम्बे लम्बे अ--

और बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी दिख रहे है खंभा भी दिख रहा है।

और किले में बड़े-बड़े झाड़ उगे हुए है।

व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की उसका कार्टून रखा हुआ दिख रहा है।

बड़े- बड़े पेड़-पौधे दिख रहे है एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

डिब्बा रखा हुआ दिख रहा है और दीवार दिख रही है व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ--

पेड़-पौधे दिख रहें है बड़े-बड़े।